औरत और आदमी चल रहे हैं सामने से पेड़ और पौधा हरा भरा दिख रहा है।

और बहुत सुंदर भी लग रहा है अह व्हाइट और ब्लैक में पट्टी भी लगी है।

आगे दो आदमी खड़े हुए हैं एक कार है एक बाइक भी खड़ी है।

हो रहा है बहोत सुंदर बहोत अच्छा भी लग रहा है।